इस इमेज में एक प्लेन भी दिख रही है।

इसमें ग्राउंड में काफी सारे पेर पौधे भी लगे हुए--

बीच में एक बड़ा सा मिरर भी है।

और यह येलो कलर की है।

इनकी कलर ब्लू कलर की बैकग्राउंड है।

एक मैरिज हॉल दिखाया गया है।

एक चेस्ट प्रिस भि नजर आ रहा है।

एक बजरंग बली का मूर्ति भी--

जिसमें एक लड़का खड़ा होकर के--

और काफी सारे बल्ब भी हैं जो कि जल रहे हैं।

इस तस्वीर में एक योगा क्लास है।

सामने एक छोटा सा मिरर भी है।

इनमें एक टेबल नजर आ रही है।

और सामने में एक दरवाजा है जो कि बंद है।

इस तस्वीर में एक टांस क्लास नजर आ रहा है।

सामने बड़ी सी एक मिरर लगी हुई है उसके पीछे--

मिरर के सामने एक आदमी भी खड़ा है।

काफी सारे बुक्स नजर आ रहे हैं।

भाए साइड में एक वाइट कलर की बिल्डिंग भी है।

इस तस्वीर में काफी सारी पेंटिंग्स नजर आ रही हैं।

काड़ भी नजर आ रही है जो कि एक गराज है।

पिक्चर में एक बड़ी सी पोर्क नज़र आ रही है।

इसके बीचो बीच एक छोटा सा पौधा है।

एक पानी दिख रहा है जो कि एक नदी में है।

जिसमें काफी सारी चीजें रखी गई हैं।

और कुछ दड़ोड़ भी छोटी छोटी है।

जो कि दोनों बंद हैं अभी--

एक सब्जी मंडी नजर आ रही है।

जहां पे तरह तरह की सब्जियां रखी गई हैं।

उधर से चलता हुआ आ रहा है।

और यहां बाहर से पीरी कलर की नजर आ रही--

नीचे दो सिंढ़िया भी नजर आ रही है।

इस तस्वीर में सामने में एक होटल नजर आरह--

जिसके दोनों साइड से सीढ़िया भी हुई है ऊपर की ओर--

सामने में दो आदमी खड़े हुए ।

और इसे लाइटिंग से पूरा सजाया भि है।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

जिस पे एक चेयर लगी हुई है बैठने के लिए--

पीछे एक उचटी कलर की बिल्डिंग है।

सड़ में काफी सारी पौधें भी लगे --

एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

जिसने काफी सारे वर्कर काम कर रही ।

ऊपर एक टी_वी भी रखी हुई है।

सारे बलून से सज़े हुवे है।

एक फिकास भेज रहा है ।

जो कि हाथ में डंडा देकर खरा है।

के पीछे एक स्कॉर्पियो लगा हुआ है।

बाकी एस _बी _आई लिखा हुआ --

एक ठेला भी बड़ी सी मछली--

एक लड़का कैमरा से फोटो भी खींच रहा है।

फिर में एक रेस्टोरेंट का इमेज है।

एक रसे से बनदा हुआ लाइट है।

तीन चार आर्टिफिशियल पौधे लगाई गई--

एक आदमी ब्लू कलर का शर्ट और ब्लू कलर की जींस पेहेन के --

और एक लड़का साड़ी में देख रहा है।

और दूसरे आदमी जो कि चेयर पे बैठा है।

सामने शीशे के दरवाजे भी हैं।

यह एक जिम की तस्वीर है।

जिसपे काफी सारे डंबल --

लाइन से रखे गए हैं।

सामने एक कप और मग भी रखी गई हैं।

इस तस्वीर में एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

फ्लोरिंग टाइल्स फ्लोरिंग है जो कि वाइट और ब्लैक में करी गई है सामने में कुछ पिक्चर्स भी दिख रही हैं।

इस तस्वीर में एक होटेल नजर आ रही है।

काफी सारे लोग बैठ कर के--

साइड मेंएक बड़ी सी मिरर भि लगी हुई है।

सामने एक कूलड़ भी नजर आ रहा है।

कुछ घास-फुस नजर आ रही है कुछ छोटी-छोटी लकड़ियां इकट्ठा करके रखी गयी ।

इस तस्वीर में एक रूम नजर आ रहे है।

जिसमें काफी सारे बॉक्सेस भी नजर आ रही हैं जिसमें फैंस हैं।

एक चेयर भी लगी हुई है ऊपर एक ए_सी भी नजर आ रहा है।

और बड़े सा कार्टून भी नजर आ रहे।

शीशे की खिड़कियां भी और ड्रोर भी नजर आ रही हैं।

जिसमें काफी सारे फल पे--

और दूर तकनजर आ रही हैं।

इसमें काफी पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

और छोटी-छोटी घासे भी उगी हुई हैं।

यह दिन का टाइम है ऊपर ब्लू कलर की स्काई भी नजर आ रही है।

कुछ अपने मोबाइल में देख रही हैं।

और हैप्पी बर्थडे का गुब्बारा भी लगाया गया है।

साइड में दो सोफा सीट भी लगाई गई हैं बीच में एक शीशे की टेबल भी है।

एक बहुत बड़ा फूल नजर आ रहा है।

और दूसरी साइड से एक रूट नजर आ रहा है।

सब पानी में उतरे हुए हैं।

पीछे में काफी बड़ी-बड़ी झूटी भी नजर आ रही है।

जिसमें कई सारी ईयरिंग्स नेक्लेस --

जो कि पहनने और मेकअप का सामान है।

इस तस्वीर में काफी सारी लोग खड़ी हैं।

काफी लाइटी वाइटी लगाई गई हैं।